नीचे धूप भी लगी है बहुत सारा ग्राउन्ड भी डला है एक आदमी भी रखा है जिसने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी है और फूल भी छोटे- छोटे प्लांट भी बोहोत बढ़िया लग रहे है और एक नंबर अमेजिंग सीन है पास ही बैकग्राउन्ड --

बैकग्राउंड में एक बाउंड्री बनी दिख रही है जिस पर कुछ मल्लुये के पाइप्स भी लगे हुए हों और सामने अ पेड़-पौधे भी दिखाई रहे हैं और येल्लो येल्लो सा आसमान भी दिखाई दे रहा है और सामनें एक--

पेड़ पेड़-पौधे भी दिखाई है मम-- गट्टे बीछे हुए हैयहाँ बगल में फील्ड भी ढली है थोड़ी-थोड़ी ग्रीन धुप भी लगी है और पेड़-पौधे प्लांट्स बहुत सारी दिख रही है बगल में कचरा भी अ ढ़ ढला हुआ है पत्तिओं वाला पे उप्पर--

गाय सफेद सफेद और ब्लैक कलर कि है और गाय की आँखे भी दिख रही है रस्सी भी दिख रही है उसकी सिंग भी दिख रही है पैर भी दिख रही है व नीचे मैदान भी दिख रहा है थोड़ा सा जमीन भी दिख रही--

बहुत सारे बिस्क- बिस्किट दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं और ये ये एक ओरयो वाला बिस्किट है और --

ए सामने कुछ हवाई जहाज सा दिख रहा है बैकग्राउन्ड मे आकास भी दिख रहा है बगल मे फूलों कि कतारे भी दिख रही है ओर ये बाड़ी भी दिख रहा है ये बहुत बड़ा सा खंभा सा भी लगा ओर ये एक आदमी भी दिख रहा है जिसने सफेद शर्ट पहनी है।